सामने की तरफ एक ईसा मसीह का भी प्रतिमा लगा हुआ है।

ऊपर की तरफ ढेर सारे लाइटे भी लगे हुए हैं।

और बगल में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां सामने की तरफ ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं।

बगल में ढेर सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

सामने की तरफ रेड कलर की भी कुछ साड़ी रखी हुई है।

और उसके बगल में एक काले कलर का भी कार खड़ा है।

और उसके बगल में एक ब्लू कलर की टी_शर्ट पहने हुए एक लड़का भी खड़ा है।

सामने की तरफ एक लेडिस ऑरेंज कलर की ओढ़नी ओढ़े हुए खड़ी है।

इसके नीचे एक ऑफर का भी बोर्ड लगा हुआ है।

और सामने की तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके सामने एक गेट भी लगा हुआ है।

सामने की तरफ कुछ झूले भी लगे हुए हैं और इस बगल एक घोड़े वाला भी झूला लगा हुआ है।

सामने की तरफ एक काले कलर का गेट लगा हुआ है।

जिसके ऊपर चांद बना हुआ है।

सामने की तरफ एक गाज भी लगा हुआ है और इस बगल एक रेड कलर का भी पोल लगा हुआ है।

बगल में चार लोग खड़े हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का टी शर्ट भी पहना हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है।

क्या सामने की तरफ एक वाइट लड़की कलर शर्ट पहने हुए एक आदमी आ रहा है।

सामने की तरफ एक नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है और इस बगल एक नेट भी लगा हुआ है।